पर्ल ओवरव्यू perl overview और पर्ल के संस्थापन installation of perl पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
इस ट्यूटोरियल में मैं
* उबन्टु लिनक्स और विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पर पर्ल के लिए संस्थापन की स्टेप्स के साथ पर्ल ओवरव्यू सविस्तार सिखाऊँगी
इस ट्यूटोरियल के लिए
आपको इंटरनेट से जुड़ा हुआ होना चाहिए
आपके पास उबन्टु लिनक्स और विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम अवश्य होने चाहिए
प्रदर्शन उद्देश्य के लिए मैं उबन्टु लिनक्स 1204 और विंडोज़ 7 ऑपरेटिंग सिस्टम उपयोग करुँगी
उबन्टु लिनक्स संस्थापन के लिए आपके सिस्टम पर सिनेप्टिक पैकेज मैनेजर संस्थापित होना चाहिए
आपके पास प्रशासनिक administrative अधिकार होने चाहिए
और आपको उबन्टु में टर्मिनल और सिनेप्टिक पैकेज मैनेजर का उपयोग करने का भी ज्ञान होना चाहिए
यदि नहीं तो कृपया स्पोकन ट्यूटोरियल वेबसाइट पर उपलब्ध लिनक्स सीरीज़ देखें
अब मैं आपको पर्ल भाषा पर ओवरव्यू यानी संक्षिप्त विवरण देती हूँ
पर्ल प्रैक्टिकल एक्सट्रैक्शन और रिपोर्टिंग लैंग्वेज का संक्षिप्त रूप है
यह जनरलपर्पस यानी सामान्य प्रयोजन वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है
यह मूलतः टेक्स्ट मनिप्यूलैशन के लिए बनायी गयी थी
अब यह वेब डेवलपमेंट नेटवर्क प्रोग्रामिंग gui डेवलपमेंट आदि के लिए प्रयोग किया जाता है
यह समझने में सरल और बहुत ही आसान है
यह जटिल डेटा स्ट्रक्टर्स जैसे c या java नहीं रखता है
यह पैटर्न मैचिंग के लिए अच्छी तरह से जाना जाता है
और सबसे महत्वपूर्ण बात पर्ल एक ओपन सोर्स लैंग्वेज यानी भाषा है
पर्ल उबन्टु लिनक्स 1204 पर पहले से लोड किया हुआ आता है
संस्थापन के लिए किसी विशेष प्रक्रिया का अनुकरण नहीं करना होता है
अब उबन्टु 1204 पर पर्ल का संस्थापित वर्जन जाँचते हैं
कीबोर्ड पर ctrl + alt + t कीज़ एकसाथ दबाकर टर्मिनल खोलें
फिर टाइप करें perl हाइफन v
और फिर एंटर दबाएं
टर्मिनल पर यहाँ प्रदर्शित की तरह आपको आउटपुट प्राप्त होगा
यह आउटपुट हमें पर्ल का मौजूदा संस्थापित वर्जन दिखाता है
मेरी स्थिति में यह perl 5142 है
अब उबन्टु 1204 पर उपलब्ध डिफ़ॉल्ट पर्ल पैकेजेस को जाँचते हैं
अब launcher bar पर जाते हैं और dash home पर क्लिक करते हैं
सर्च बार में टाइप करें synaptic
synaptic package manager आइकन दिखेगा
इस पर click करें
ऑथेंटिकेशन यानि सत्यापन उद्देश्य के लिए आपसे आपके एडमिन पासवर्ड के लिए पूछा जायेगा
अपना एडमिन पासवर्ड प्रविष्ट करें और authenticate पर क्लिक करें
तुरंत ही सिनेप्टिक पैकेज मैनेजर पैकेज सूची लोड करेगा
यह आपके इंटरनेट और सिस्टम की स्पीड के आधार पर कुछ समय ले सकता है
एक बार जब लोड हो जाये तो quick filter में टाइप करें perl
आप पैकेजेस की एक सूची देखेंगे
पर्ल पैकेज से पहले हरे रंग का चेक बॉक्स दिखाता है कि यह पहले से ही संस्थापित है
जबकि स्टार के निशान के साथ वाले चेक बॉक्सेस दिखाते हैं कि आपको इन पैकेजेस की भी ज़रुरत हो सकती है
ये आपको एक पर्ल स्क्रिप्ट का डॉक्यूमेंटेशन यानी प्रलेखीकरण या डिबग यानी दोषमुक्त करने के लिए मदद करता है
भविष्य में पर्ल को प्रयोग करने के लिए आवश्यक पैकेजेस को संस्थापित करें
अब विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पर पर्ल के संस्थापन के लिए स्टेप्स को देखते हैं
रेकॉर्डिंग के समय विंडोज़ में पर्ल ट्यूटोरियल्स वर्जन 5142 उपलब्ध था
अब पर्ल का एक नया वर्जन उपलब्ध है
नया पर्ल वर्जन 5163 प्रयोग करके मैं संस्थापन प्रदर्शित करूँगी
नए वर्जन पर भी ट्यूटोरियल्स में दर्शायी सारी पर्ल कमांड्स अच्छी तरह से कार्य करेंगी
विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पर ब्राउज़र खोलें
और एड्रेस बार में दिखाए गए की तरह url टाइप करें
आप पर्ल के डाउनलोड पेज पर ले जाये जायेंगे
अपने सिस्टम के विवरण के अनुसार download version चुनें
मेरी स्थिति में यह पर्ल का 32 bit वर्जन होगा
अपनी पसंद की लोकेशन में अपने कंप्यूटर पर perl msi फाइल सेव करें
मैंने अपने सिस्टम पर यह पहले ही सेव कर ली है
जहाँ आपने perl msi फाइल डाउनलोड की है उस फोल्डर को खोलें और इस पर डबलक्लिक करें
फिर popup विंडो में run पर क्लिक करें
setup wizard विंडो में next पर क्लिक करें
license aggrement when prompted को स्वीकार करें और फिर next पर क्लिक करें
अब custom setup विंडो दिखेगी
यह विंडो पर्ल की सारी संस्थापित हुई विशेषताओं को सूचीबद्ध करती है
ये हैं;
perl
ppm utilty perl modules को विंडोज़ पर डाउनलोड और संस्थापित करने में प्रयोग होता है
डॉक्यूमेंटेशन जो perl modules के लिए डॉक्यूमेंटेशन प्रदान करता है
और पर्ल के एक्साम्पल्स यानी उदाहरण
ये सारी डिफ़ॉल्ट विशेषतायें रखें और next पर क्लिक करें
environmental variable और file extension की सेटिंग के लिए एक पॉपअप विंडो दिखेगी
दर्शाये गए की तरह चेक बॉक्स को चयनित रहने दें
next पर और फिर install पर क्लिक करें
यह पर्ल का संस्थापन शुरू करेगा
आपके इंटरनेट की स्पीड के आधार पर यह कुछ समय ले सकता है
एक बार हो जाये तो display release note checkbox को अचयनित करें और फिर finish पर क्लिक करें
यह विंडोज़ पर पर्ल का संस्थापन पूरा करता है
अब संस्थापन को सत्यापित करते हैं
start मेन्यू पर जाएँ और कमांड प्रॉम्प्ट खोलने के लिए टाइप करें cmd
कमांड प्रॉम्प्ट पर टाइप करें perl स्पेस हाइफन v
और एंटर दबाएं
आप पर्ल का संस्थापित वर्जन देखेंगे
अगर यह वर्जन नहीं दिखाता तो एक बार फिर संस्थापन की उपरोक्त स्टेप्स दोहराएं
अब एक सरल hello perl प्रोग्राम निष्पादित करते हैं
प्लेयर के नीचे कोड फाइल लिंक में यह फाइल इस ट्यूटोरियल के साथ आपको प्रदान की गयी है
कृपया डाउनलोड करें और इस फाइल को प्रयोग करें
मैंने अपने सिस्टम पर वो फाइल users\amol डिरेक्टरी में सेव कर ली है
अतः वहाँ जाते हैं
फिर टाइप करें perl sampleprogrampl
और enter दबाएं
दर्शाये गए की तरह कमांड प्रॉम्प्ट पर hello perl प्रिंट किया जायेगा
इसको सारांशित करते हैं
इस tutorial में हमने सीखा:
पर्ल का overview और
उबन्टु लिनक्स 1204 और विंडोज़ 7 के लिए पर्ल संस्थापन के निर्देश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
अधिक जानकारी के लिए कृपया
contact@spokentutorialorg पर लिखें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
इस mission पर अधिक जानकारी spokentutorial org/nmeictintro पर उपलब्ध है
आशा करती हूँ अपने इस पर्ल ट्यूटोरियल का आनंद लिया होगा